यह एक घर दिखाई दे रहा हैं जिसपे एक मेन गेट दिखाई दे रहा है जो की ब्लैक कलर का हैंयहाँ एक--

तथा बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक अ बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है।

यंहा पे एक मीटर लगा हुआ दिखाई है तथा यहां बहुत सारा पानी फैला हुआ दिखाई दे रा --

येल्लो कलर का गुलदस्ता रखा हैं एक ग्रीन कलर का गुलदस्ता दिख रहा हैं इसमें दो तीन बहार रखे दिखाई दे रहे है यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही हैं।

तथा कुछ आदमी और लड़के यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तथा ये लाइटिंग दिखाई दे रही हैं।

यहा एक तलघर दिखाई दे रहा है जिस में तीन चार आदमी खड़े हुए हैं तथा दो यहां रिक्सा दिखाई दे रहे हैं।

एक रोड दिखाई दे रहा है इसपे कचरे की गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है एक लड़का बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहा हैं एक लड़का पैदल जाते हुए दिखाई दे रहा हैइसी किनारे बहुत सारे--

एक स्कूटी खड़ी हुई है दो तीन बाई दिखाई दे रहे है एक आदमी बाईक बे बेठा हुआ है लाइटिंग दिखाई दे रही है।